बहोत सारें लोग पूजन कर रहें हैं। बहोत ही सारे लोगों ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बहोत सारे लोगों ने पीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं। आगे --